इस इमेज में मुझे दो लड़के दिखाई दे रहे हैं और एक जिवान दिखाई दे रहा है जिसमें मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही है।

उम्म डला हुआ है दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे कैफे दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है टी ए बी एल इ टेबिल ।

और सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक घड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस ऑटो के पीछे एक ऑटो और खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और एक आदमी उठ कर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।